पम्प भी रखा हुआ है जो देखने मे काफी सुंदर लग रही है और लाइटे भी लगी हुई है जो की सफेद कलर की दिखाई दे रही है देखने मे काफी सुंदर लग रही है और बहुत सारे --

ऊपर बहोत फोटो मे देखिए जो माताजी की क्रीमे भी दिखाई दे रही है जो बहुत सारी लगी हुई हे देखने मे काफी सुंदर लग रहा हे ये ।

ताकी आप देख सकते है यहाँ पर एक में आदमी दिखाई दे रहा है जो देखने में काफी ख़राब लग रहा है क्युकि और चश्मा भी लगाए हुए है जो कि में काफी ख़राब लग रहा है और यहाँ पर एक अम बहुत सारी किताबे रखी है बहुत सारी अलम --